इस दृश्य में दिखाया गया है कि यह पे बर्तन बना हुआ है बहुत सारा यहां पे बर्तन बनाने वाला जगह है।

इस इमेज में यह दिखाया जा रहा है कि यहां पे एक बहोत बड़ा फील्ड है इस फील्ड में बहोत सारा यहां पे खेल रहे हैं।

बहुत सारे अलग अलग प्रकार के कपड़ा पहन के आए हुए हैं और यहां के सामने में कच्चा मकान बन रहा है उसमें बहुत सारे खिड़की लगा हुआ है।

दराज रखा हुआ दराज में बहुत सारा सामान रखा हुआ है नीचे में भी एक दराज बना हुआ है एक लकड़ी का।

सनमाइका लगा हुआ है और ताला लगा हुआ है एक यहां पे कुर्सी है ब्लू कलर का और तार बहुत सारा है इधर उधर।

और इस सीढ़ी में पर जो रखा हुआ है उसमें पर्दा बिछाया हुआ है उसका जो कलर है पर्दा का वो नारंगी कलर है।

इस शिविंग में यह दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक प्रोग्राम हो रहा है। इस प्रोग्राम में यहां पे सभी लोग कुछ चित्र बना रहे हैं कागज का।

इस इमेज में यह दिखाया गया है कि यहां पे एक टीचर है ये टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को यहां पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां बेंच पर बैठे है।

यहां पे व्हाइट बोर्ड है वो बोर्ड पे मास्टर पढ़ रहा है वो जो मास्टर पहना है ब्लू कलर का शर्ट पहना है और जींस पहना है और ऊपर बोर्ड लगा हुआ है जो कमरा है कमरा का कलर है।

इस इमेज में यह दिखाया जा रहा है यहां पे एक छोटा सा कमरा है इस कमरा में एक शोरूम है इसमें गाड़ी है बहोत सारा।

यहां पे बहुत सारा कचड़ा है और यहीं पे चबूतरा बनाया हुआ है उसपे टावर है उसे दोनों तरफ तार निकला हुआ है और बाग में एक ठो कार लगा हुआ है।

और यहां पे बेंच लगा हुआ है किनारे किनारे बहोत सारा और किनारे राइट साइड में लगा हुआ है कुर्सी।

एक कटरी में फूल लगाया हुआ है यहां पे एक लेडिस लड़की खड़ी है व्हाइट कलर के पहन के कपड़ा अ कपार में भी व्हाइट कलर का लगाए हुए--